लाल सफेद गोल्डन पर्पल ग्रे और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन का प्रयोग किया गया है।

यहाँ बहोत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और एक्टीविटी कर रहे हैं कोई --

उसकी नीव पड रही है।

ये तस्वीर किसी स्टेशन के बाहर का य मॉल के बाहर की तस्वीर है।

ये एक रैली की तस्वीर है जिसमे एक रैली निकल रही है या ताजिया निकल रहा है।

जो इंटरनेट कैफै के नाम पे है। शोभा ग्राफ़िक्स एंड कैफै ।

आ दिन का दृश्य दिखाई दे रहा है दूर से अ ये तस्वीर ली गई है।

यह तस्वीर किसी कमरे की दिखाई दे रही है। इसमे पीछे भगत सिंह की तस्वीर लागी हुई है और दो लोग बैठे हुऐ हैं।